सामने देखने पर सफेद रंग की कुर्सियां भी हैं।

इस दृश्य में हमें एक जगह दिखया।

जहां पर एक पुराना घर है।

एक आदमी ने स्टॉल लगाया हुआ है।

और सामने बहुत सारी चॉकलेट्स भी पड़ी हुई हैं।

दुकान दिख रहा है इसके ऊपर एक हरा बोर्ड लगा है।

दृश्य में आप देख सकते--

और इसके पास मे दो लोग खड़े हैं।